सामने एक दुकान है दुकान के ऊपर हरे कलर की बोर्ड लगी हुई है जिसमें सफ़ेद कलर से लिखा हुआ है दुकान का नाम।

हैं बस में बहोत सारी सीटें है जो कि नीले कलर की है और ऊपर सारी बहोत सारी रैक बनी हुई है जिनमे समे समान रखने वाले है।

एक आदमी काट रहा है जो कि ये लकड़ी के ऊपर रख के काट रहा है। उसके पूरे शरीर में मछलियों के हिस्से लग चुके हैं और सामने स्टील के बर्तन रखे हुए हैं जिनमें मछलियों को रखा जा रहा है काट-काट के।

ऊपर दो पंखे दिख रहे हैं और एक खिड़की वाला पंखा दिख रहा है और एक सफेद कलर का लाइट लगा हुआ है। एक बेंच लगी हुई है जिसमे स्टील के बर्तन रखे हुए हैं।